यहाँ पर एजेंसी है जो हमें यहाँ इन गाड़ियों को चलाने के लिए ही सिलिंडर भरती है और हमारी गाड़ी सिलिंडर से ही --

और बीच में सड़क है जो बहोत अच्छी रंग से पोते हुए है। बहोत अच्छा लगता --